दिखाई दे रहा हे। ओपहर चौकोर रंग की रेलिंग बनी हुई है। दिखाई दे रहा है। काउंटर पर सामने आईएनओएक्स लिखा हुआ है।